बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे है।

इस चित्र में एक आयुर्वेदिक दिखाई--

येह एक चित्र है इसमें एक रस्ता दिया है आस-पास कुछ खंबे हैं।

कुछ पेड़ भी लगे है।

आसपास पेड़ भी है।

यह एक चित्र है।

यह एक चित्र है।

बड़ी एलसीडी है।

यह एक चित्र है।

और घर भी बने हैं।

और एक टीचर दिख रही हैं।

बहुत सी कुर्सिया भी दिख रही है।

यह एक चित्र है।

बहुत बड़ी बिल्डिंगे दिख रहीं है।

बहुत से बच्चे दिख रहे है।

ये एक चित्र है।

ये एक चित्र है जिसमें झरना बेह रहा है।

इसमें बहुत से पौधे है।